या मा जी नीला रंग का अर सफ़ेद रंगा का गुब्बारा एंच हम तें एक बड़ु बोर्ड जैं मा जी तें मनखी बण्युं दिख्येण त निसाण हम तें दुई मोटर साइकिल भीन खड़ी दिखेण लगीं।

जै मा जी हमते काला रंगु गेट बंद होय दिख्येणु एंच हम तें तारन जायां दिखेण त भितर हम तें एक मोटरसाइकिल भी खड़ी हुईं दिखेणी जैका ओर-पोर हम तें कोलेज कु छप्पर दिखेणु सफ़ेद रंगा कि रेलिंग दिखेणी।

एक गौ बस्याँ दिखेण लग्या तु गौ मा जी हमथे कैका कुड़ा बिन दिखेण लग्या सामणी फर हमते बड़ा-बड़ा कोल्या का चीड़ का डालान दिखेण लग्या।

ये चित्र म जी हम देख सगदों कि हम तें यखम एक बड़ु हॉस्टला दिखेण लग्युं जु पीला रंगा कु वै का सामणी पर हम तें एक बड़ु खम्बा दिखेण लग्युं।